छोटे छोटे बच्ची के कपड़े टंगे हुए हैं और एक--

सब्जी खरीद रहे हैं गाड़ी वगैरह खड़ी हुई हैं।

ये काफी बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अलग अलग--

एक शोरूम है यहां पर स्कूटी बिक रही हैं।